शादी का पिक्चर दिख रहा है। यहां पर स्टेज बना हुआ है। जो बहोत बड़ा दिख रहा है। वाइट कलर का है।

सामने एक बाउंड्री बनी हुई है।

और यहां गमले भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।